इस तस्वीर मे हम देख सकते है यहाँ पर हमें एक मैंजिक सिसर कर के हेयर शॉप दिखाई दे रही है यहाँ पे अदर हमें कुछ लोग बेठे दिखाई दे रहे है बाहर हमें सड़क दिखाई दे रही है।

देख सकते हैं यहाँ पर हमें यह सैलून दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमें कुछ लोग बाल काटते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमें --

बाहर हमें डस्टबिन दिखाई दे रहा है। यहां पे हमें छोटा सा ग्रीन कार्पेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें पोस्टर में बोहोत सारे लोगों के हेयर कट दिखाई दे रहे। यहां पे ऊपर सेकंड फ्लोर दिखाई दे रहा है जहाँ पे --

तस्वीर मे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक सड़क दिखाई दे रही है। उस के ऊपर हमें बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें एक रिक्शा दिखाई दे रहा है जिसका रंग हमें काला और अ सफेद दिखाई दे रहा है। अंदर हमने पीला भी दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर।

एक आदमी होल्डिंग लगाते दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें ठेले दिखाई दे रहे हैं कार दिखाई दे रही है साइकिल मोटरसाइकिल --

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक रिक्शा दिखाई दे रहा है जो कि हमें काला रंग का दिखाई दे रहा है पीला रंग भी दिखाई दे रहे है लाइन से कुछ रिक्शे खड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे --

में खिड़कियां और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं | यहाँ पे हमें नीचे सड़क दिखाई दे रही हैं| यहाँ पे बाइकें दिखाई दे रहीं हैं |

इस तस्वीर में हम देख सकते है यंहा पर हमे एक हेयर सलून दिखाई दे रहा है यंहा पर हमे एक आदमी बाल काटते दिखाई दे रहा है यंहा पर हमे लाल रंग की काले रंग की कुर्सियां दिखाई दे रही है। यंहा पे हमें --

स्कूटी दिखाई दे रही है। साइकिल भी दिखाई दे रही है। यहां पर कपड़ों की दुकान भी दिखाई दे रही है। यहां पर एक ग्राउंड फ्लोर दिखाई दे रहा है सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।